यहाँ पे दो दूकान नजर आ रही है जिसमें ब-बुक वाला दूकान लग रहा है | उसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है यहाँ से वहाँ लगतार दो व्यक्ति बैठा हुआ है।

बोहोत बड़ी मंदिर नज़र आ रही है। नीचे छोटे-छोटे और हैं उम नीचे बोहोत सारी झाड़ियाॅं नज़र आ रही हैं पेड़ नज़र आ रहे हैं जंगल भी दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति साम --

यहाँ पर नदी नज़र आ रही है अ से एक नाव एक नाव है।

यहां पर तीन मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही हैं जिसमे बहोत सारे खिड़किया और दरवाजे दिख रहे है यहां पे घर दिखाई दे रहा है यहां ऑटो नजर आ रहा है।

यहां से रोड दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा रिक्शा बाला रिकशा नजर आ रहा है और--

यहां पे बहुत सारे खिड़किया नजर आ रही हैं इसमे बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं चार्ट पेपर से कुछ बना रहे है सामने बोटल भी दिखाई दे रहे हैं।

उ-उ-बीच में सीढ़ियां नजर आ रही हैं और अंदर में फूल भी सजा हुआ हैं ऊपर में एक झंडा है।